घर भी दिख रही है बाइसाइकिल भी दिख रही है।

मिट्टी में दिख रही है और सीमेंट सब भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक ग्राउंड दिख रही है।

घर भी बहुत ज्यादा दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग घर दिख रही है।

मनुष्य ने पाइप पकड़ी हुई है ग्रीन कलर की।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा लाल रंग का बिल्डिंग दिख रही है।

और फाउंटेन के सामने एक लाइट लगी हुई है।

ऊपर लाइट्स मेभी लगी हुई है।

इसमें बहुत ही ज्यादा सामान रखी हुई है।

दो फैन भी दिख रही है।

पांच मनुष्या भी दिख रही है एक मनुष्य साइकिल में बैठी हुई है।

दूर में पहाड़ भी दिख रही है।

ऊपर नीला आसमान भी दिख रही है।

दिखाई दे रही है चेयर सब भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा दिख रही है।

का कलर सफ़ेद है नीचे टाइल्स भी दिखाई दे रही है।

पाइप भी दिखाई दे रही है लोहे भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत ज्यादा इंटा दिखाई दे रही है।

एक मनुष्य भी दिखाई दे रही है।